यहाँ हम सब देख सकते है सब्जी मंडी दिखाई दे रही है सब्जी मंडी के किनारे-किनारे कई सारे बोरियों में सब्जी रखी हुई हैं तथा ऊपर की ओर तिरपाल नजर आ रही है बीच में देख सकते --

सड़के की धूप नजर आ रही और लोग भी नजर आ रहे हैं सब्जी मंडी के दोनों साइड देख सकते हैं सब्जी यहाँ लगी हुई हैं।

बीच में एक तराजू भी दिखाई दे रहा है जिसके अंदर सब्जी भी दिखाई दे रही हैं मटर दिखाई दे रहे हैं मिर्ची नजर आ रही हैं तथा काफी सब्जी हरी हैं।

बोर्ड पे कई पेंटिंग हो रखी है नीचे की और देख सकते हैं हम सब की डेक्स दिखाई दे रही हैं डेक्स लाइन से लगे हुए हैं।

दीवार के किनारे भी एक गमला दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर हरे-हरे पौधे नजर आ रहे हैं।

यहाँ एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है तथा बिल्डिंग के ऊपर के मंजिल का नजारा देख सकते हैं हम सब की ग्रिल भी नजर आ रही है बिल्डिंग की ग्रिल पिलर भी दिखाई दे रहे हैं।

नजारे नजर आ रहे हैं बिल्डिंगे कुछ सफेद कलर की हैं अगल-बगल बिल्डिंगों के पेड़ दिखाई दे रहे हैं ऊपर खुला आसमान नजर आ --

दो सफ़ेद कलर के पिलर दिखाई दे रहे हैं तथा ऊपर सफ़ेद दीवार दिखाई दे रही है सामने की और देख सकते हैं कि बड़े हाने बड़े घने --

देंगे कि आप सब घने-घने पेड़ दिखाई दे रहे हैं बड़े-बड़े ऊपर की और सफेद बाजल बड़े-बड़े दिखाई दे रहा है कुछ नीला आसमान नजर आ रहा है।

और गले में रुमाल बाँध रखा है तो एक व्यक्ति आगे की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है जो कि लाल रंग का कपड़ा पहन रखा है।

हम सब सामने देख सकते हैं कि ऊपर खुला आसमान नजर आ रहा है जहाँ पे सूरज दिखाई दे रहा है जो कि काफी चमक रहा है आगे की ओर हम सब देख सकते हैं मस्जिद दिखाई दे रही है।

अगल-बगल बहुत बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा है खंबे नजर आ रहे हैं इसके कुछ लोग पीछे दिखाई दे रहे हैं तथा ऊपर नीला आसमान नजर आ रहा है।

यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह गली मार्केट की नजर आ रही है मार्केट में काफी सारे भवन दिखाई दे रहे हैं ऊँचे-ऊँचे ऊपर आसमान नजर आ रहा है।

ये एक समारोह चल रहा उ सबका जिसमें काफी सारे लोग एक पंडाल के नीचे हैं तथा खा पी रहे हैं।

सामने की दीवार दिखाई दे रही है दो खिड़कियाँ नजर आ रही हैं जिनसे बाहर का व्यू देखो तोह कई बिल्डिंगे नजर आ रही हैं तथा खिड़कियाँ लोहे की जाल की बनी हैं।

चद्दर बछ रखा है सफेद कलर का सामने दीवार दिखाई दे रही है चौखट नजर आ रही है इन फूलों में सफेद और --

यहाँ देख सकते हैं की काफी ऊँचे-ऊँचे --

टावर दिखाई दे रहा है जिस पे की तार नजर आ रही है जो की बिजली की टावर दिखाई दे रही है ऊपर आसमान गिरा नजर आ रहा ब --

कई लोग बीच में जाते-आते नजर आ रहे हैं गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं खंबे पे देख सकते हैं आप सारे बहुत सारे तार तार नजर आ रहे हैं सामने की और एक बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है।

तथा दो बाइकें भी खड़ी नजर आ रही हैं अगल-बगल दुकानें हैं बोर्ड लगे हुए हैं इन पे --